और इसके बाजू में एक बहुत बड़ा पेड़ भी लगा हुआ है और इसके आस पास बहुत बड़े बड़े मकान भी बने हुए दिखाई दे रहे हैं ।

जैसा की आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत प्यारी स्टेज बनी हुई है ये गोल्डन कलर की है।

जैसा की आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यालय है । ये कार्यालय वाइट कलर का है | इसमें बहुत बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ लगी हुई है ।